दीवार में स्विच और घड़ी भी लगाया हुआ है।

बड़े बड़े पत्थर भी है और छोटे छोटे भी।

बरे बरे पेर भी उगा हुआ है।

बहोत सारी बिल्डिंगस भी है बिल्डिंगस के ऊपर टीना लगाया हुआ है।

ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज कलर में बैलून भी है।

बस नदी है किनारे में बहुत ज्यादा पत्थर भी है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे कॉपी पेपर और गम रखा हुआ है।

इस तस्वीर में तीन मनुष्य खड़े होके हैं।

बाहर मे रेलिंग और सीढ़ी भी बनाया हुआ है।

तस्वीर में एक टेबल दिख रहा है।

इस तस्वीर में बरा बरा पहाड़ दिख रहा है और ऊपर आसमान भी।

लंबा से बहुत ज्यादा घर भी घर को सफेद कलर किया है और बेम्बू से बनाया है।

बगल में बड़ा सा पेड़ भी उगा हुआ है।

अंदर में बहुत सारे बेंच और टेबल भी रखा हुआ है।

किनारों में बहोत सारा छोटे छोटे पत्थर भी है और घास भी उग के है।

ऊपर में घड़ी लाइट और फैन लगा हुआ है।

नीचे में बास्केट भी रखा हुआ है और डस्टबिन भी है और बड़ा सा एक टेबल भी है।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़े हो के कप पकड़ रहा है।

बगल में स्टील का बाल्टी भी रखा हुआ है।

उसमें दरवाजे और बहोत सारे खिड़की बन के हैं।

जो की एक ऑरेंज वाइट और ग्रीन में है।

उसके अंदर दो केक रखा हुआ है जो कि पिंक और येलो कलर में है।